दाल है जो बहुत अच्छा दिख रहा है।

जिसमे ढेर सारे मिठाईया रखे हुए हैं अलग अलग प्रकार के लड्डू रसमलाई रसगुल्ला काला जामुन--

एक दरवाजा है बीच में सीढ़ी है।

ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ है।

जहां दो व्यक्ति खड़े हैं वहां पे छड़ भी रहे हैं।

यह एक बहुत बड़ा इमारत का चित्र है जो मिट्टी कलर का है।

बाहर में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं एक गाड़ी है।

बहुत बड़े बड़े गेट है खिड़कियां है।

हाल में येलो कलर का पेंट और व्हाइट कलर का पेंट किया गया है।

यह एक मेन रोड का चित्र है।

बगल में एक पौधा लगा हुआ है जिसमें रेड कलर का फूल लगा हुआ है।

ब बगल में ढेर सारे धूल मिट्टीया ईटा दिखाई नजर आ रहा है।

इसमें जिसके बाहर बैलून लगा हुआ है ढेर सारे व्हाइट और ब्लू कलर के।

पाँच कटोरे रखे गए हैं।

यह एक फूल के माली का चित्र है।

बहुत सारे बिल्डिंग नजर आ रही है।

बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यह एक रेस्टोरेंट का चित्र है।

ब्लैक कलर का पेंट किया हुआ है।

एक दुकान का चित्र है जिसमें एयरटेल का पोस्टर लगा हुआ है।

बाहर में दो आदमी खड़े हैं।

बहुत बड़ा शीशा है अंदर में लाइट्स जल रहे है।

ब्लैक कलर का शीशा है जिसपर घड़ी रखे गए है।

एक तौलने वाला रखा गया है।

यह एक टैर का दुकान का चित्र है।

यह एक रेल पटरी का दृश्य है।

ये डांस एकेडमी का चित्र है जिसमें ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं।